हुआ है बहुत ही अच्छा व्यू है रोड - उड का बहुत बढ़ियां व्यू है देख सकते हैं चार गो ऑटो इधर मेरा एक स्कूटी इधर है जा रहा है।